और यहाँ पर बैंक दिखाई दे रही है जिसकी एंट्रेंस दिखाई दे रही है कांच की विंडोज नजर आ रहे हैं ऊपर में वहां भी कांच का दिख रहा है वहां भी काफी सारी बाइक्स पार्क किये गए नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोल्स इलेक्ट्रिक वायर्स नज़र आ रहे हैं।

और कुछ महिलायें वहाँ पर नजर आ रही है जो मच्छियाँ बेचते हुए दिख रही है और जो दीवार नजर आ रही है वो हरे रंग की दिख रही है स्तम्भ वहाँ पर दिखाई दे रहे है।

बड़े हरे पेड़ छोटे हरे वृक्ष दिख रहे हैं और बैंक के सामने कुछ बाइक्स पार्क किए गए दिख रहे हैं और वहाँ एक चेयर नजर आ रही हैं जो

यहाँ कुछ शॉप नजर आ रहा है फूलों का हार दिखाई दे रहा है जो कुछ पीले रंग का कुछ लाल रंग का नजर आ रहा है और कुछ ओरेंज कलर का दिख रहा है वही वहां पर सभी लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

एक होल नजर आरा है जहां पर केट्रिन सर्विस के लोग नजर आ रहे हैं सभी जो है अलग अलग तरह के खाना दिखायी दे रहे हैं।

और वहीं वहाँ पर अच्छी तरीके से ब-बम्बू से जो है वो बनाया गया है एंट्रेन्स काफी अच्छा दिख रहा है।

यहाँ पर कुछ लेबर वरकर काम करते हुये दिख रहे है गिट्टी नजर आ रही है मैदान नज़र आ रा है बोरी नजर आ रही है।

बुक शॉप नजर आ रहा है जहा पर काफी सारे बुकस दिखाई दे रहे है कलेंडरस नजर आ रहे है वही वहां पर जो है लाइटस और काफी जादा वहां पर बुकस रखे नजर आ रहे है बहुत अलग अलग प्रकार के बुक्स है।

सेलर दिख रहे है कस्टमरस काफी जादा नजर आ रहे है कस्टमर ने हेलमेट पहना हुआ है।

पैर आप को दिखाई दे रहे है और काफी वहा पर उनके जो इन्स्टुमेंट है मैकनिकल के वो दिखाई रहे और सभी लोग वह पर काम करते मकैनिक दिख रहे हैं।

ऊपर एक एक बनी हुई है बड़ी सी मछ्ली लेते हुये जा रहे है यह एक समुन्दर की मछली है।

जो जैकिट पहना है बह पिंक कलर का है बही उन्होने यल्लो कलर का हेलमेट पहना दिख रहा है।